पाइप द्वारा भरना है गया हुआ दिखाई दे --

और उसके बगल में एक पेपर में एक छोटा बच्चा का चेहरा दिखाई दे रहा है और इसके बगल में लाल जैसे रंग का --

यह कोई नहर जैसी लग रही है। इसको पानी बह --

यह एक अ कॉलेज जैसा देखाई दे रहा है जिसका मुख्य गेट है।